भी लगे हैं। पेड़ हैं खंबा है यहां पर तार भी है।

यहां पर सड़क बहोत बड़ी है यहां प पौधे भी लगे हैं।

यहां पर जिम करने वाले हैं यहां पर मशीने हैं यहां पर गुब्बारे भी लगे हैं लाइट है कुर्सी है।

रोड भी लगा है यहां पर ये बहुत बड़ी सड़क है यहां पर ये हरे कलर पौधे भी लगे हैं यहां --

कुर्सी भी है बैठने के लिए मेज है लाइट है।

बहोत सारे किताबें हैं दो दो बंदे हैं यहां पे बैठे हैं सड़क है भी है --